यहाँ पर हमें एक मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है।

हमें यहां पर एक धरमशाला जैसा दिखाई दे रहा है।

एक काले कलर की कुर्सी भी दिखाई दे रही है।

हमें यहां पर एक रूम दिखाई दे रहा है।

हमें यहां पर एक गाड़ी का शोरूम दिखाई दे रहा है।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

दुकान के बाहर काले कलर का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

हमे यहां पर एक लेडीस दिखाई दे रही है।

लाल व पीले कलर का दान पात्र दिखाई दे रहा है।

पेड़ पौधों के ऊपर हरियाली भी नजर आ रही है।

यहां पर एक गार्डन का दृश्य दिखाई दे रहा है।